जो अ सबको गिफ्ट देते हुए फोटो लगे हुए हैं सर्टिफिकेट देते हुए फोटो लगे हुए हैं और इसमें काफी सारे छोटे छोटे फोटो हैं।

यह एक बोहोत बड़ी रोड है। रोड के रोड पे मिट्टी पड़ी हुई मिट्टी लाल कलर की दिख रही है। यह पक्का रोड नही है और यहाँ पे एक सफेद कलर की गाडी दिख रही है और दो-तीन हमें यहाँ पे बाइक दिख रही हैं।

एक पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप काफी बड़ा बनाया है। पेट्रोल पंप पे कुछ लोग बाइक लेकर के खड़े हुए दिख रहे हैं। एक हमें खम्भा दिख रहा है जिसमें लाइट लगा हुआ है।